जिसमे बहोत सारे ट्रेडमिल एक कतार से लगा हुआ है।

और दोनों स्टैचू अ गोल के आकर के प पार्क के छोटी सी जगह पे अवस्थित है।

और एक छोटा सा डस्टबिन है स्टील का।

यह एक सुपर मार्केट है जिसमे बहोत सारे घरों के सामान--

जो टेबल है छोटीसी चौड़ी उसपे बैठ के आदमी एक्सरसाइज करते हैं।

अंदर का छेत्र है जंहा एक हवाई जहाज है जो अभी--

गेट है जिसके सामने कुछ बच्चिया है।

जिन को उस चेयर पर रखा हुआ है और एक महिला है।

ड्रेस पहना हुआ है डॉक्टर का और उसने मास्क भी लगाया हुआ है।

पंख को अभी फैलाया नहीं है।

इसमें से एक व्यक्ति कार के बोनेट को--

यह एक वॉटर पार्क है जिसमे स्लाइड् और रिंग आकर के रॉड लगे हुए हैं।

में लाइटे भी लगी हुई है जो--